नमस्कार दोस्तों जियोजेब्रा के इस शुरुआती ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जियोजेब्रा के साथ शुरुआत करने के लिए बुनियादी चीजों से परिचित कराऊँगा
जियोजेब्रा क्या है
यह एक मुफ्त गणितीय सॉफ्टवेयर है
wwwgeogebraorg से इसे डाउनलोड कर सकते हैं
यह कंप्यूटर की सहायता से सीखने के लिए उपयोगी है क्योंकि यह इंटरेक्टिव है यानि संवादात्मक है और आप ज्यामितीयज्यामितीय आकृतियों की बीजगणितीय उक्ति देख सकते हैं
यह ज्यामिती बीजगणित तथा कलन को जोड़ता है
तो आप ज्यामितीय आकृतियाँ बना सकते हैं समीकरण को दाखिल कर सकते हैं और वेरिएबल्स तथा वेक्टर्स इत्यादि के साथ काम कर सकते हैं
जियोजेब्रा के साथ शुरूआत के लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू 1004 एलटीएस संस्करण तथा जियोजेब्रा 32400 संस्करण का उपयोग कर रहा हूँ
यदि आपने पहले ही जियोजेब्रा संस्थापित किया है तो उबंटू मेन आइटम पर जाएँ एप्लीकेशंस एजुकेशन या साइंस और जियोजेब्रा एप्लीकेशन पर क्लिक करें
यदि आपने जियोजेब्रा संस्थापित नहीं किया है तो जियोजेब्रा संस्थापित करने के लिए कृपया सिस्टम ऐड्मिनिस्ट्रेशन सीनैप्टिक पॅकेज मैनेजर पर जाएँ
चलिए जियोजेब्रा विंडो को देखते हैं
इस ट्यूटोरियल में मैं संक्षिप्त में मेनू बार टूल बार तथा टूल व्यू ग्राफिक्स व्यू और अलजेब्रा व्यू इनपुट बार तथा कमांड्स समझाऊँगा
एक जियोजेब्रा विंडो इस प्रकार का होता है
इसमें कोई भी विंडो पर आधारित एप्लीकेशन होता है
जैसे एक मानक मेनू बार है
टूल बार जियोजेब्रा के कम्पास बॉक्स की तरह होता है
टूल व्यू बताता है कि कौन से टूल का चुनाव हुआ है और उपयोग के लिए तैयार है
ग्राफिकल व्यू जियोजेब्रा का ड्रॉइंग पैड है
इस पैड पर आप ज्यामितीय आकृतियाँ बना सकते हैं
यह अलजेब्रा व्यू है
आप इस विंडो में ड्रॉइंग पैड पर सभी ज्यामितीय आकृतियों के बनाए गए बीजगणितीय उक्तियों को देख सकते हैं
इनपुट बार आपको बीजगणितीय समीकरणों को दाखिल करने की आज्ञा देता है जो कि ड्रॉइंग पैड और साथ ही साथ अलजेब्रा व्यू में प्रदर्शित होंगे
इनपुट बार में जियोजेब्रा द्वारा समर्थित कमांड्स इस ड्रॉप डाउन मेनू में हैं
ड्रॉइंग पैड जियोजेब्रा में हमेशा दिखाई पड़ता है और उसे बंद नहीं कर सकते
व्यू पर जाकर तथा ग्रिड ऑप्शन का चुनाव करके आप ड्रॉइंग पैड पर ग्रिड का उपयोग कर सकते हैं
उसी तरह यदि आप इसे नहीं देखना चाहते तो ऐक्सेस अन चेक कर सकते हैं
हम इस ट्यूटोरियल के लिए ऐक्सेस तथा ग्रिड को प्रत्यक्ष रखेंगे
यदि आपको अलजेब्रा व्यू या इनपुट बार को बंद करना है तो आप व्यू में जाकर उस ऑप्शन को अनचेक करके यह कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल से इनपुट बार को निकाल देते हैं
अब टूल बार या कम्पास बार को विस्तार में जानेंगे
टूल का इस्तेमाल करने के लिए किसी एक चीज़ पर क्लिक करें
ध्यान देंजब आप उस पर क्लिक करेंगे तो गहरे नीले रंग की बॉर्डर उस चीज़ पर दिखाई पड़ेगी इसका मतलब है कि उसका चुनाव हुआ है तथा टूल व्यू में उसका नाम और कैसे उसका उपयोग करें इसका सुझाव प्रतीत होगा
मूव ड्रॉइंग पैड टूल आइटम के दाहिनी ओर पर है
उस पर क्लिक करें और फिर ड्रॉइंग पैड पर क्लिक करें
बाँयें माउस बटन को दबाकर रखें और ड्रॉइंग पैड को इच्छित जगह पर ले जाएँ
यदि हम कम्पास बॉक्स में पेंसिल से शुरू करें ज्यामिती में हम एक बिंदु पेंसिल से खींच सकते हैं
पेंसिल टूल्स यहाँ हैं
टूल के कोने में एक छोटे लाल त्रिकोण पर क्लिक करोगे तो आप सभी पेंसिल या पॉइंट टूल्स देख सकते हैं
उसी तरह से टूल आइटम्स का अगला सेट रेखाओं के लिए है
यहाँ लंब बाइसेक्टर यानि द्विभाजक पालिगान यानि बहुभुज तथा सर्कल यानि वृत्त इत्यादि हैं
इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे बिंदु रेखाखंड समानांतर रेखा तथा लम्ब रेखा बनाना मापने की चीज़ें चीजों की प्रकृति बदलना और फाइल को सेव करना
अब कुछ बिंदु खींचते हैं
न्यू पॉइंट ऑप्शन को चुनें ड्रॉइंग पैड पर कहीं भी क्लिक करें
आपको नए बिंदु मिलते हैं
ध्यान दें कि बिंदु ड्राइंग पैड और अलजेब्रा व्यू दोनों पर दिखाई दे रहे हैं
सभी टूल आइटम्स जो ड्राइंग पैड पर खींचे हैं उन्हें जियोजेब्रा में ऑब्जेक्ट्स कहते हैं
आ और ब बिंदु फ्री ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि यह ड्राइंग पैड के अन्य आकृति पर निर्भर नहीं हैं
सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स पर जाकर दो मौजूद बिंदु आ और ब का उपयोग कर आप एक रेखाखंड खींच सकते हैं या फिर ड्राइंग पैड पर कहीं और क्लिक करें और आपको दो नए बिंदु तथा इन दो बिंदुओं के बीच एक वृत्तखंड मिलेगा
उसी तरह बिंदु पर क्लिक करके आप एक लम्बवत रेखा खींच सकते हैं और फिर आपको एक लम्बवत रेखा मिलती है जो बिंदु डी से लेकर वृत्तखंड सीडी को लम्बवत्त होगी
एक समानांतर रेखा मैं यहाँ कहीं भी एक बिंदु पर क्लिक करुँगा और एबी का चुनाव करूँगा
मुझे बिंदु ई से एबी पर एक समानांतर रेखा मिलती है
अब आप दो ऑब्जेक्ट्स का प्रतिच्छेद बिंदु यानि पॉइंट ऑफ इन्टर्सेक्शन पता कर सकते हैं यदि आप इस टूल पर जाते हैं तथा इंटरसेक्ट त्वो ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करते हैं
जब माउस को प्रतिच्छेद यानि इन्टर्सेक्शन पर ले जाते हैं तब दोनों आकृति चिन्हांकित होते हैंक्लिक करें और आपको दो ऑब्जेक्ट्स का प्रतिच्छेद मिलेगा
दूरी को मापने के लिए दाहिनी तरफ के चौथे टूल आइटम पर क्लिक करें और डिस्टेंस ओर लेंग्थ टूल को चुनें
आप यहाँ डीएफ पर क्लिक करके दो बिंदुओं को चुनकर बिंदुओं के बीच की दूरी माप सकते हैं या आप संपूर्ण रेखाखंड को चुन सकते हैं
ध्यान दें कि ग्रिड पर कोई यूनिट नहीं है
हम यूनिट्स के बारे में आगे के विषयों में जानेंगे
उससे पहले आप प्रत्येक आइटम्स का रंग और लेबल जैसी प्रापर्टीस बदल सकते हैं
यदि आपको कोई भी आकृति नहीं बनाना कृपया यहाँ एरो टूल का उपयोग करें तो जब आप उसका उपयोग करेंगे यह ड्राइंग पैड पर कोई भी आकृति नहीं बनायेगा
आकृति की प्रोपर्टीज को बदलने के लिए माउस को आकृति पर ले जाएँ जब वह चिन्हांकित होगा राइट क्लिक करें और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें
अब कुछ बेसिक यानि बुनियादी प्रोपर्टीज़ के बारे में बताते हैं और विस्तृत जानकारी आगे बताई जाएगी
नाम को बदलने के लिए एक नया नाम टाइप करें
आप एक कैप्शन भी टाइप कर सकते हैं
आप आकृति को दिखाने या न दिखाने का चुनाव कर सकते हैं
आप लेबल को न दिखाने का चुनाव कर सकते हैं या इनमें से कोई एक ऑप्शन दिखा सकते हैं
कैप्शन को ऑन रखते हैं
कलर टैब में आप रेखा का रंग बदल सकते हैं
स्टाइल टैब में आप मोटाई बदल सकते हैं और आप स्टाइल बदल सकते हैं
आप जब इसे बंद करेंगे आप रेखा को नये रूप में देखेंगे
बाएँ ओर का टूल आइटम यानि मूव टूल आइटम सिखाने के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि यह पाठ को गतिशील और इंटरैक्टिव बनाता है
सभी आकृति स्थानांतरित हो सकती हैं
फ्री आकृति पर निर्भर सभी आकृतियाँ स्थानांतरित होंगी तथा उनकी प्रोपर्टीज़ संरक्षित रहती है जब आकृति स्थानांतरित होती है
उदाहरण के लिए यदि हम बिंदु आ या ब को स्थानांतरित करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी पेर्लेल प्रोपर्टी को बरकरार रखते हुए समानांतर रेखा भी स्थानांतरित होती है
फाइल को सेव करने के लिए फाइल आइटम को चुनें फिर सेव एएस पर क्लिक करें
फोल्डर को चुनेंमैं जियोजेब्रा डॉक्युमेन्ट पर जाता हूँ
फाइल नाम एन्टर करें और सेव पर क्लिक करें
ध्यान दें कि नाम ऊपर पैनल में दिखाई पड़ता है और यह सभी जियोजेब्रा फाइल्स की तरह ggb फाइल की तरह सेव होता है
अब फाइल को ओपन करने के लिए फाइल ओपन पर क्लिक करें और ओपन करने के लिए कोई भी फाइल चुनें
अंततः नियत कार्य
नियत कार्य में सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स टूल का उपयोग करके एक आयत बनाएं शुरू करें
फिर समानांतर और लम्बवत्त रेखा का उपयोग करें फिर इंटरसेक्ट त्वो ऑब्जेक्ट्स और डिस्टेंस ऑर लेंग्थ टूल का उपयोग करें
आखिर में जो आयत बनाया है उसे मूव टूल के उपयोग से जांचे तथा आकृतियों को स्थानांतरित करें
मैंने पहले ही यह नियत कार्य यहाँ कर लिया है
मैंने रेखाखंड एबी से शुरुआत की और मैंने आयत एबीसीडी बनाया
अब यदि मैं मूव टूल पर क्लिक करता हूँ और फ्री आकृतियों को स्थानांतरित करता हूँ ध्यान दें कि किसी भी स्थिति में आयत एबीसीडी एक आयत ही रहेगा यदि सही से बनाया गया है
मैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का आभार प्रकट करता हूँ जो कि टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है
इसे आई सी टी द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एम् एच आर डी भारत सरकार से सहायता प्राप्त है
इस पर अधिक जानकारी इस वेबसाइट httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर देख सकते हैं
आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ